सभी बच्चों के पास अ कलरफुल शीट रखी हुई है ये उस शीट पे कुछ बना रहे है बच्चो के पीछे बहोत बड़ी खिड़की बनी हुई है।

इस इमेज में मुझे ई-रिक्‍शा दिखाई दे रही है यह ई-रिक्‍शा रेड कलर की है।

रोड के किनारे पर मुझे कुछ दुकान और घर दिखाई दे रहे है इनमे से कुछ घरों पे छत डली है।

इस इमेज मे मुझे एक अ आदमी और एक औरत दिखाई दे रहा है यहा किसी--

इस दुकान पर बहोत सारे समान रखे हुए है यहाँ मुझे कॉपी किताब अगरबत्तिया टॉफी के डिब्बे और भी बहोत सारे सामान दिखाई दे रहे है।

नीचे जमीन पर रेड कलर का कार्पेट बीछा हुआ है मस्जिद की दिवारे व्हाइट कलर उ की लग रही है।

जिसमे कुछ अ अज जिसमे एक वर्कर वर्क कर रहा है कार का एक टायर निकला हुआ है और वह जमीन पर रखा हुआ है कार के साइड मे कुछ और कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।